यहां सामने एक घर दिखाई दे रहा है और --

है और एक लड़का उनके पास खड़ा देख रहा है।

और आस पास कुछ भी नहीं--

तीन मंजिल बना है और रेलिंग लोहे की लगाई हुई --

बच्चों की एक्सरसाइज करने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है जिसके --